इस पार्क में चारो ओर हेज ही हेज लगा रखे है पार्क इतना सुंदर है पार्क --

यहाँ पर नीचे एक बाइक --

यह एक दृश्य है इस दृश्य में हमारे सामने एक --

कॉलेज का है कोल्ले कोले कॉलेज के अंदर अनेक प्रकार के रूम बना रखे है यह कॉलेज के पार्क की फोटो है।

फैक्ट्री का है फैक्ट्री के बाहर कुछ ट्रक खड़े हुए नजर आ रहे है ये सभी ट्रक लोडिंग का सामान --

पूरा मटेरियल फैक्ट्री के अंदर लाते है।

यह एक बोहोत बड़ा पहाड़ है। इसके नीचे एक जगह है जहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

गाड़ी स्टैंड का है जहाँ पर गाड़ी हुई नजर आ रही है ।

यह दृश्य हमारे सामने एक चर्च का है चर्च पच्चीस दिसंबर के समय की है यहाँ पर --

कुछ सोल्युशन किये जाते है।